पर्दे भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं इसमें सोफे का कलर लाल कलर का है।

जो डेली घरों में यूज होते हैं और काफी अच्छे से--

यहां पर किसी चीज की मीटिंग चल रही है जहां पे कुछ जेंट्स कुछ लेडि कुर्सियों में बैठे हुए हैं।

दो तीन ऑटो चार ऑटो खड़ी हुई है। कुछ बैनर भी लगे हुए है जो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे है। एक छतरी लगी हुई है।

पीछे डिजाइन भी इसमें है गोलाकार की एक गमले में फ्लावर भी रखा हुआ है।

यह एक ब्यूटी वाला जैसा लग रहा है यहां पे--.

यह सब्जी और फ्रूट की दुकान लग रही है जिसमें गोभी दिख रहा है केला रखे हुए हैं तरबूज रखे हुए हैं।

और भी काफी फ्रूट रखे हुए हैं जिनको मेरे को नाम मालूम नहीं है और--

चार मंजिला की लग रही है जिसमें से कुछ लोग खड़े हुए हैं एक यहां पे अकेले खड़ा हुआ है और पार्क भी है अच्छा इसमें।

होटल का मालिक शॉप पे खड़ा हुआ है। दूसरा वाला बना रहा है बेचने के लिए लाइटिंग भी है।

अं और काफी प्रकार की मिठाइयां रखी हुई नजर आ रही--

बतख दिखाई दे रहे हैं और ये एरिया पार्किंग जैसा है बच्चों के खेलने वाली जगह है यहां पे।

और पीछे साइड पूरा पहाड़ दिख रहा है छोटे बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं।

पहाड़ों में छोटे-छोटे पौधे भी दिख रहे हैं ऊपर आसमान है।

और बगल में पेड़ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं मैदान सा है यहां पे--

यह एक कपड़े की शॉप है जर्किंग शॉप यहां पे शू जर्किंग जिंस वाले जर्किंग पेंट वगैरह मिलते हैं।

बिल्डिंग बहुत बड़ी लग रही है यहां पे और कुछ नहीं है यहां--